मेरे सामने जो दिख रहा है ये एक बसे खड़ी है सामने ये शायद कोई बस स्टैंड है।

टेंट का लग रहा है कोई शादी समारोह या किसी फंक्शन का चल रहा है यहां हरे भरे पेड़ पौधे दिख रहे हैं।

टेबुल हैं जिसमें अपन खाना रख के या नाश्ता रख के खाते हैं और सोफा दिख रहा है सामने मछलियों का एक जार दिख रहा है।

मेरे सामने जो दिख रहा है ये कोई सर्किल है और सामने सड़क है और उस सर्किल पे कुछ ऑटो या --

और सामने एक आदमी इंजीनियर जैसा खड़ा हुआ है और लोहे के यहां पिलर बने हुए हैं पीछे --

और यहां सड़क बनी हुई है सड़क के ऊपर ये बाउंड्री लगी हुई है सामने हरे भरे पेड़ पौधे घास ओस दिख रहे हैं।

मेरे सामने ये खेल ग्राउंड दिख रहा है जिसमें बच्चे खेल रहे हैं और बच्चों को खेलने के लिए यहां--

मेरे सामने एक ऑफिस टाइप का दिख रहा है जिसमें पेंटिंग हो रखी है एक बंदे ने --

और बहुत सारे बच्चे है गार्डन मे दो बूक रही है।

ये बाउंड्री दिख रही है जिसमें व्हाइट और रेड कलर की बाउंड्री बना रखी है जैसे कोई ट्री को --